अ-मूर्ति के बाहर कुछ नीला सा नजर आ रहा है अ-रेलिंग भी ल--

यहाँ पे बहुत-सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहे है यहाँ एक खम्बा लगा हुआ है खम्बे मे हैडलाइट लगा हुआ है रोड दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक बड़ा-सा भवन दिखाई दे रहा है सामने के तरफ मैदान दिखाई दे रहा है अ एक आदमी बाइक पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है हेलमेट पेहना हुआ है अंदर हरी-हरी दो कारे दिखाई दे रही है कुछ बाइके भी दिखाई दे रही है।

आ-एक मंदिर दिखाई दे रहा है अ-मंदिर की सीढ़िया बहुत सारी दिखाई दे रही है उसके आस पास रेलिंग भी दिखाई दे रही है आस-पास और घने पेड़ दिखाई दे रहे है कई प्रकार के झंडे भी दिखाई दे रहे है।

आ सामने की तरफ पेड़ भी दिखाई दे रहे है एक भवन भी दिखाई दे रहा है व सुंदर-सा पीछे की तरफ भवन के पेड़ दिखाई दे रहे है हरे-भरे---

अ उसमे एक झूमर भी टंगा हुआ है दो बड़े-बड़े दरवाजे दरवाजे दिखाई दे रहे है गुम्बज़ भी दिखाई दे रहा है।

अ-मंदिर के आस-पास भी अ-कुछ लोग दिखाई दे रहे है एक अ पत-पत्ते कुछ दिखाई दे रहे है सामने की तरफ कुछ काले-काले से वायर मे टंगे हुए--